हमारे यहां एक सुंदर सेलून खुला है जिसमें --

यहाँं पर व्हाइट कलर की इकोस्पोर्ट कार का --

जहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ लोग पैदल कुछ स्कूटी पर जा रहे हैं।

जोकि मंदिर में दिखाया गया है बहुत सारे पिल्लर से बनाया गया है वह स्तम्भ बहुत ही सुन्दर दिख रहे हैं।

हमारे आर्मी में थापित युवाओं को प्रेड की निरना सिखाई जा रही है।